ये यहां पे एक स्टेज को सजाया जा रहा है यहां पे सामने खूब चाय रखे हुए हैं यहाँ पे एक लड़की--

ये एक लड़का फंक्शन मे आया हुआ है और ये ब्लू कलर का कुर्ता पेहने हुआ है जींस भी--

लड़ाई छोड़ी गई है स्टार्स के फरारे भी लगाए गए हैं यहाँ पे इस बड़े से ग्राउन्ड में --

शू वगैरह है यह पे छोटे छोटे बहोत सारे बहोत सारे प्लांट्स है।

ये एक फंक्शन चल रहा है यहां पे लेडिस जेंट्स सभी यहां--

स्टेज पे खड़े हुए हैं और यहां पे बहोत सारे फूलों के लड़ों को छोड़ा गया व्हाइट रेड कलर के और यहां पे लाइटिंग्स भी है भी छोड़े गए --

यहाँ पे पीछे फायर एक्सटिंग्युशर स्लेंडर पे रखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारी --

रखे हुए हैं यहां पे लेडिज जेंट्स सभी बच्चे है टीचर्स भी है सामने और कुर्सी भी रखी है बै--

ये एक बड़ा सा इंस्टिट्यूट या मंदिर दिख रहा है यहां पे बड़े बड़े लाइट के फोकसस मारे गए हैं।

और उसमें हरी-हरी घास उगी हुई हैं राइट साइड में भी उठी हुई है और स्ट्रेट यहां बड़े-बड़े झाड़ा दिख रहे हैं पी --

यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ आजु-बाजु बड़े-बड़े झाड़ भी है यहाँ पे दिख रहे हैं बिल्डिन्गा भी --

शेप्स की यहाँ पे डाले हुए यहाँ पे तीन शर्ट मारा गया है लाइट के खंभे हैं आजू बाजू बहुत सारे घरा है और यहाँ पे दिख रहे हैं।

टाइल्स भी है नीचे भी वाइट कलर के टाइल्स बिछाए गए हैं यहां पे कैमरा है और बहुत सारे एलईडी लाइट चल रहे हैं।

ये ए ये एक बुक स्टॉल है यहां पे बहोत सारे बुक्स रखे हुए है पेंस है पेंसिले है छोटे पट्टी के--

नीचे फर्शियां उसके ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं पानी गिरा हुआ है बाजू में --

यह एक होटल है यहां पे बहुत सारे फैना है लाइटा है।

और यहां पे राइट साइड में ए सी है झंडा भी यहां पे लगाया हुआ है वॉल पेपर रेड कलर किया गया है राइट साइड --

भी है यहाँ कोगो घरा भी दिख रहे है यहाँ पे जंगल भी दिख रहा है और यहाँ पे बड़े-बड़े खंभे है वायरिंग दिख रही है।

ये एक फंक्शन चल रहा है यहां पे झूले से --

नीचे से ऊपर तक लाइन लगी हुई है नीचे हरी भरी घास दिख रही है बैठने के लिए बेंचेस है।

और यहां पे लाइट के स्लो मोशन मरे गए है और यहां पे स्टेप्स है और आजु बाजू बड़े बड़े झाड़ा भी दिख रहा है बहुत सारे लोग भी यहां पे हैं।

यहां पे टीचर को एक कुर्सी के उपर बिठाके यहां पे गिफ्ट दे रहे हैं यहां पे--

यहां पे ये एक जिम की दुकान है और यहां पे बहोत सारे--

यहां रगड़ा पड़ा हुआ है और यहां पे प्याज दाली भी खा रहा है और ये बहुत सारे --